यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। यहाँ तालाब के किनारे एक ब्रिज बना हुआ है।

यहाँ प्लेट में बहुत सारी मछलियाँ है इन मछलियों को बिल्लू बोलते हैं।